एक बहोत बड़ा सा तालाब टाइप का दिखाया गया है जिसमे बहोत बड़े बड़े मार्बल के चट्टान वटान रखे गये बहोत सारे।

कुछ पर्दे वर्दे रखे गए बहोत सारे घर वर दिखाये जा रहे एक पौधा लगाया गया जिसे--

जो वाइट कलर पर है निचे लोहे के गेट वेट लगाये गये ग्रील व्रील है डस्टबिन टाइप का रखा गया है साइड में--

ग्रील टाइप के लगाये गये है चद्रा लगाये गये है लोहे के बोहोत बड़े --

और उसे कवरअप किया गया है ऊपर से गेरेज टाइप का बनाया गया है।

विंडो पे भी कुछ लोहे के ग्रिल टाइप का कुछ लगाया गया बहोत सारे पोस्टर वोस्टर चिप--

बगल पे साइड में कुछ घास वास पोधे वोढे दिखाए जा रहे है।

एक खिलोने का छोटा सा शॉप दिखाया गया जिसमे बहोत सारे खिलोने विलोने रखे हुए है बारबिस है--

पूट के अन्दर भी बोहोत सारे सामान वामन रखे गये है कुछ हाथ में --

सूखे पत्ते भी गिरे हुए है कुछ छोटे छोटे पौधे है एक सीढ़ी दिखाया जा रहा है एक--

नेट से ढाका पूरी तरह से बाउंड्री टाइप का किया गया है लोहे का पिलर दे कर के और एक बाउंड्री टाइप का बनाया गया है जिसपे लिखा गया है तिरंगा उर्बन ।

गमलों में कुछ पौधे रखे हुए कुछ ऐसी छोटे छोटे पौधे हैं।

एक घर टाइप का दिखाया गया है जिसमे रेड कलर किए गये है और --

एक आदमी है जो उनपे पानी वानी दे रहा है कुछ बड़ा बड़ा ब्रेक छन--

इस बगल पर एक स्कूल है स्कूल पर काफी खूबसूरती से उसे डिज़ाइन दार से उसे न--

उसके ऊपर में एक लिखा गया है एक लेडीज है जो बच्चे को ली हुई है एक जेंट्स है जो बच्चे को --

कुछ रास्ता टाइप के दिखाए जा रहे है घास वास दिखाए जा रहे है।

दो तीन आदमी है जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है।

पांडाल दिखाया गया है पण्डाल के बाहर पे दरवाजा पे काफी खूबसूरती से उसे सजाया गया फूलो से।

तो केले उसे डिजाईन दार तरीके से बना कर के फुल को सजाया गया फुल है रेड में ओरेंज में येलो में--

बहार पे झंडे लगे गये बोहोत सारे मंदिर है।

पोधे वोधे के गमले वमले लगाये गये है साइड में एक बाटने का जगाह टब सा बनाया गया है जिसमे बहोत सारे चेयर्स वेयश है।

एक तो ऐसे शॉप टाइप का दिखाया गया जिसके बहार पर बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है की वी साथ--

एक पीला कलर का स्कूटी खड़ा है एक दुकान है छोटा सा जिसमें काफी फल फूल मिले जा रहे--

वो काफी सुख गया है एक सुखा सा पेड़ दिखाया जारा कुछ बड़े बड़े ब्रिज दिखाए जारे एक लोहे का पिलर दिखाया जारा--

घर टाइप का दिखाया जा रहा है कुछ पौधे वोधे दिखाए जा रहे है रास्ते रास्ते दिखाए जा रहे है रोड वोड दिखाए जा रहे है।

डम्बलस बोहोत सारे है कुछ छोटे छोटे कुछ बड़े बड़े है।

एक कॉफी शॉप टाइप का दिखाया जा रहा है जिसके बाहर पर एक बोर्ड बोर्ड पर लिखा गया है विनिस रेस्टोवर।

बहोत सारे स्कूटीस है बाइक है कार है दो आदमी खड़ा है एक आदमी बेग लिए हुआ है फोन पर वो बात कर रहा है।

कुछ पौधे वोधे दिखाए जा रहे हैं विंडोज है विंडोज पर काच वाच लगे हुए हैं एक लोहा का पोल है जिसपे तार वार लगे हुए हैं बहुत सारे बगल में एक और--